यह एक मकान है इसमें दवाई का दुकान है।

मैदान में हरा भरा घास है।

यह एक मिठाई का दुकान हैं।

गाड़ी का रंग व्हाइट कलर का है नदी के--

इसमे दो बइठने वाला ब्रिंच है।

यह बिल्कुल सुनसान है।

और पैंट वाइट कलर का है।

बैक्ति बैठे हुए हैं और कुछ बैक्ति समान निकाल रहे --

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बगल में गांव दिख रहा है।

यह एक मिठाई का दुकान है।

यह एक बड़ा सा घर है इसमें--

इसमें हरी हरी घासें हैं।